बागवानी है चारों तरफ से इट्टां शोलिंग रोड है।

यहाँ पे दुगो हारमोनियम रखा हुआ है और बहुत अच्छा है यहाँ पे बैग बेगू बैग रखा हुआ है यहाँ पे।

यह एक किराना दुकान है किराना दुकान के भीतर एक फेविकोल और फॉर्चून स्ट्रिंग बिसलेरी बोतल पानी और फ्रिज रखा हुआ है और इसमें बहुत सारे अनेक अनेक --

यहाँ पर बस स्टैंड है बस यहाँ पे तीन है उसके पास दोगो पिलर भी है और यहाँ पे पांच आदमी और बैग वगैरा रखा हुआ और है और पोस्टर भी लगा हुआ है ।

बड़ा सा एक रूम है रूम के छत पर तीन बल्ब लगे हुए हैं और वहां पर एक ए.सी. भी है और यहां पर बहुत सारे किताब वगैरह मिलते हैं यहां पर तीन अलमारी भी हैं।